एक तखत है उसपे मछली रखी है। बिक रहीं है। कछु लोग लय रहे है।

अल तीन नाव है ऊपर छत है ।

एक बिल्डिंग है ग्रिल लगी है।

ये मार्केट है। इसमें सभी औरतें कपड़ा खरीदती हैं सौदा खरीदती हैं।

वैसे रोड भी ये अच्छी लगती है बहुत।

ये एक जीप है। कुछ लोग जाए रहे हैं आए रहे हैं।

फ्राक सूट मिल रहे है कपड़े ब--

और सभी कलर की है बहुत अच्छी लगते हैं।